इस तस्वीर में नारियल की दवाइयां दिखाई जा रही हैं इस--

इस मंदिर के सामने दो बड़े बड़े लाइट जल रहे हैं इस मंदिर में कई लोग आए हैं।

यह एक बहुत ही छोटा सीमेंट का दुकान है।

इस बक्से का ताला दो है।

यह एक बहुत ही बड़ा किसी चीज का मशीन है।